यहा पर एक कपड़े की शॉप है जो काफ़ी बड़ी है काफ़ी सारी दुकानो में स्टैचू रखे हुए हैं जो कपड़े पहने हुए हैं सलवार सूट सारी पैंट शर्ट सभी तरह के कपड़े पहने हुए हैं।

--और ठेले के साइड में थैले टंगे हुए हैं और ठेले के नीचे भी बास्केट रखी हुई हैं उसमें केले रखे हुए हैं और साइड में बाईक भी खड़ी--

पिले कलर के हैं साइड में कपड़े टंगे हुए हैं | काउंटर बना हुआ है जो ऑरेंज कलर का है और दुकान के ऊपर पोस्टर लगा हुआ है साइड में एक पेड़ भी बहुत बड़ा लगा --